यहा एक मन्दिर हे जिसका नया-नया निर्माण उआ हे । और जिसके प्रवेश द्वार पे दो केले के पेढ लगे हुए हे और मन्दिर के सामने कुछ लोग खड़े हुए हे ।

यह एक डैम है जिसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है और इसके इसके पीछे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए है।

योग क्लास का दीऋष दिखाई दे रहा है जहा पर हरा कलर अ की घास लागि हुई है।